बगल में मंदिर है बगल में एक और बिल्डिंग है जो सफ़ेद कलर की है और पांच छह पेड़ लगे हुए जो की हरिया कलर की जो मंदिर है वो सफ़ेद है उपसे एक तिरंगा लगा हुआ है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ के नीचे एक खाली जमीन है जहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।